इसको देख के लग रहा है कि यहां में पूजा हो रहा है।

और उसके साइड में एक वाटर बोतल है।

इस फोटो में एक जंगल को दिखाया गया है जहां में बहोत ज्यादा पेड़ है और--

ये जो आदमी है वो व्हाइट कलर का थैला लेकर जा रहा है।

दो पिलो है व्हाइट कलर का और बीच में एक ग्रीन कलर का पिलो है।

फोटो में किसी बिल्डिंग का कॉरिडोर में कॉरिडोर को दिखाया गया है यहां में बहुत ज्यादा फ्लावर पॉट भी रखा गया है नीचे में फिर--

उसी साइड में चार तीन आदमी बैठा है फिर एक लड़की बैठके ओ लोग को देख रहे है।

कोई अंकल खड़ा हो रहा है कोइ कोइ बैठ रहा है कोइ आंटी अपना बच्चा का साथ में खड़ा कर रहे हैं बहुत सारा सामान लेके।

ये फोटो में तीन मुर्गी दिखाया गया है।

इस फोटो में एक साइकल दुकान को दिखाया गया है।

आगे जाने से वहां में जाने के लिए रास्ता बनाया गया है और वहां पे बहोत ज्यादा खिड़की भी है बिल्डिंग --

इस फोटो में एक बहुत बड़ा सा फील्ड को दिखाया गया है।

वो लोग घर के बाहर में खड़ा हो रहा है।

इस फोटो में एक पूजा फंक्शन को दिखाया गया है जहां में आदमी लोग चेयर में बैठा हुआ है।

फिर उसके पीछ में और भी घर है जो की वो लोग भी बहोत ख़राब कंडिशन में हैं।

और इसका नाम जो लेगो बेकरी लेगो मर्गी सोयोप सिकोल मिर्मीर तीनालि पासीघाट भी है दिखा रहा है।

फर्स्ट स्कल्पचर में सब लोग बैठा हुआ है सेकंड स्कल्पचर में खड़ा हो के है थर्ड स्कल्पचर में भी खड़ा हो के है।